त्र में हमको एंट्रेंस का बताया गया है यह शायद होटल हो या एअरपोर्ट हो या.. या हॉस्पिटल जैसा दिख रहा है।

हम यहाँ पे झाड़ों देख सकते हैं और बिल्डिंग का रंग सफ़ेद और लाल में बनाया गया है। हम यहाँ पे मउस के झाड़ देख सकते हैं और नारियल पेड़ देख सकते हैं।

और बाजु में हम झाड़ भी देख सकते हैं और गाड़ी खड़ी हुई देख सकते हैं ऊपर तक आसमान भी देख सकते हैं आसमान में बादल भी दिख रहे हैं।

और यहाँ पे हमको बिल्डिंग बी दिख रही है। इसका एंट्रेंस बी दिख रहा है।

झाड़ बहुत-स् प्यारा सा पी पानी के बीचों-बीच उग रहा हैं और हम थोड़े बहुत इंसानों को भी देख --

और पानी है और झाड़ो है ऊपर की तरफ आसमान है यहाँ पर बनाया हुआ घर छोटा-मोटा हट है।

इस चित्र में हम ऊप एक बड़ी इमार इमारत देख सकते हैं यहाँ हम पे ऊपर एक शेर बैठा है और आजू बाजू हम पेड़ देख सकते हैं और कुछ लोग चल फिल रहे हैं।

चित्र में हम पानी देख सकते हैं और एक नाव देख सकते हैं नाव पे कुछ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इसको इस चित्र में हम महिला बदलय विद्यालय करके हिंदी मे लिखा गया है और यह बिल्डिंग पीले रंग मे मारा गया है। यहाँ पे हम साइड पे गाड़ी देख सकते है। ऊपर की तरफ आसमान देख सकते है।